ये लोग यहां खड़े हैं नदी के अंदर काफी सारी बोटे हैं यहां पे मछलियाँ पकड़ते हैं और यहां पर ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां निकल रही है।

ये नाव की रेस चल रही है और यहाँ पर --

हमारे यहा -- शादी पार्टी का या अन्य